लकड़ी की अलमारी है जिसमें छोटे-छोटे बड़े-बड़े अ कॉलम हैं जिसमें किताबें रखी हैं यहाँ पे एक भैया खड़े हैं जो की सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए हैं और यहाँ पे एक सीढ़ी भी रखी हुई है।

बहुत बड़ा ब्रिज हैऔर ब्रिज के नीचे बहुत सारा पानी है पानी के चट्टान है और उसके साइड बहोत सारे पेड़ भी है।

ऊपर लाइट लगी है सामने हाथ में मोबाइले है यहाँ पे एक लड़की है जो कि रेड फ्रॉक पहनी है कुछ ब्लैक पहनी है।

यहाँ पर्पल कलर की कुर्सी है यहाँ पर एक दुल्हन और दूल्हा खड़े है जो कि म रेड ड्रेस पहने हुए है।

यहाँ सामने एक बिल्डिंग है यहाँ पे ए_सी की मशीन लगी है| यहाँ पर हरी-हरी काँच लगी हुई है नीचे बहुत सारी दुकाने है यहाँ पे फूल भी लगी है यहाँ एक ऑटो भी खड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी है। सा--